जोकि दोनों हाथ ऊपर किये हुए दिखाई दे रहा है। जिम की मशीने दिख रही हैं। कुछ छोटी बड़ी टाइल्स लगे हुए --